यहाँ बहोत ही बड़ा बड़ा घर बनाया गया है और यहाँ एक सामने स्कूटी खड़ा है और यहाँ बहोत ही छोटा- छोटा गाज--

जिसे आदमी बैठकर देख सके और साइड में बहुत ही पेड़ भी है।